अंकुश की दुकान है और लोग सब लोग बैठे हुए हैं।

फोटो भी लगे हुए हैं जो दीवार में लटके हुए हैं माइटी भी अच्छी तरीके से लगी हुई है और पर्दा भी लगा है।

फ्राक दिए हुए हैं और दुकान अच्छी लग रही है दुकान में अच्छे-अच्छे कपड़े भी हैं।

ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा है फोन पे का भी है और एक और स्कैनर रखा हुआ है।

अच्छा सा घर बन रहा है उस पर छत पड़ रही है और--

मिस्त्री भी है लेबर भी है जो मिस्त्री है उस--

कैम्प है जहां लोग काम भी करते हैं यहां पे मशीन भी अच्छी-अच्छी रखी हुई है और सारी मशीन सब इलेक्ट्रॉनिक है।

मशीन्स और बहुत अच्छे ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं।

हम लोग मेहनत करके अच्छी तरीके से फसल काट के फिर यहां बेचने के लिए आते हैं बहुत अच्छा फार्म है यह।

उसका घर भी है एक नीम का पेड़ और लगा बाहर टंकी भी रखी हुई है पानी के लिए लाइट भी जल रही--

यह जगह बहुत अच्छी घूमने लायक भी है यहां पे--

महाराणा प्रताप तोप भी लगा हुआ बहुत--

बनने का काम हो रहा है यहां पे पिकअप की पल्ली और--

यहां पे बकरी बंधे हुए बकरी का फरम है यहाँ।

अच्छा बना है ऊपर से भी रहना का व्यवस्था भी है पानी वानी से लोग बचे रहेंगे।

गिरही मछली हैं शहरी मछली हैं ज्यादातर गिरही मछली हैं।

पोल भी बना हुआ इसमें और गुलाबी गुलाबी कमल भी--

रेड कलर का क्या घास लगी है मॉर्निंग टाइम घूमने लायक --

दुला अपनी शादी शादी उस दुलान का इंतजार भी कर रहा है दुलान आई नहीं स्टेज पे वो भी आ रही है।

जान नहीं पा रहे दूध कहां पर है कैसे पिया जाता है बंदा दिखा रहा--

लगता है ओपनिंग टाइम है भी ल गया लगता है क्लास चलेगी--

कुछ इधर रैक में भी रखा हुआ है पिक्चर तो अच्छी-अच्छी लगा के रखी कुछ इसमें लिखा हुआ भी बहुत अच्छा सेटअप बना--

जैसे कार की रिपेयरिंग हो रही वही लगता है कि पंद्रह बीस साल से--

बहुत अच्छा सेटअप भी इसका बना के रखा हुआ कार्ड तो देखो क्या गजब लग रही है शीशा भी टूट गया इसका लगता है।

थ्री बी_एच_के मकान वन बी_एच_के नीचे टू बी_एच_के ऊपर--

बहुत अच्छा डेकोरेशन है उसमें दो-तीन लोग बंदे भी हैं लगता है मैनेजर है कुछ ऐसे भी होंगे।

बाल्कनी बाल्कनी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई।

पूरा वुडन लकड़ी का बना बना दिया भाई लाइटिंग देखो तो बहुत अच्छी है --

दिख रहा है भाई चूजे हैं कितने छोटे-छोटे हैं छूने में तो डर लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है देख--

यह स्विमिंग रेस है बहुत अच्छा सेटअप बना के रखा हुआ है भाई एक एक लाइन में बच्चे लोग स्विमिंग --